एक बस है जो बहुत ही बड़ा है।

बिल्डिंग के आगे दो कार लगा एक ग्रीन कलर का दो गो --

बहुत सारा कार एक कार का कलर है --

एक लड़की के एक कलर का टी-शर्ट पहनी है ब्लैक कलर का पेंट जो अच्छा लग रहा है देख --

कुछ कर रहे हैं एक साइकिल लेकर पीला कलर टी-शर्ट आदमी खड़ा है ।